सब के हाथों में एक सूप है जिसमें कई सारे फल और एवम पूजा की सामग्री रखी हुई है।

और यह दृश्य छठ पूजा का लगता है।

तीन व्यक्ति खड़े नजर आ रहे हैं कई सारे साड़ियां प्लास्टिक में पैक है या फिर कई सारे डब्बे रखे हुए हैं।

बगीचे के पृष्ठभूमि में बड़े पेड़ और व्यवस्थित हरियाली का दृश्य है ।

जैसे कि दो कार और एक सायकल और एक मोटरसाइकिल खड़ी है।

तस्वीर में एक प्रार्थना कक्ष दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक कार शोरूम दिखाई दे रहा हैं।

घर के पास लंबी लंबी लाइट लगी हुई हैं।

इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है।

तस्वीर में एक सुपर मार्केट का अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

बाहर केबिन पर पहचान संख्या या लेबल दिया गया है।

मुख्य फोकस में लेग प्रेस और अन्य वेट ट्रेनिंग मशीन दिखाई दे रही है।

जिम में दीवार पर बड़े शीशे लगे हैं।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

दो औरतें और पांच पुरुषें नजर आ रहे हैं।

दीवार सफेद रंग से रंगा गया है ऊपर में ट्यूबलाइट्स लगे हैं और पंखे लगे हुए हैं।

जहाँ खुले मैदान के सामने कुछ इमारतें दिखाई दे रही है।

मैदान के किनारे पर छत और कुर्सियां है।

दीवारों पर कला कृतियां फ्रेम लगे हुए हैं।

तस्वीर में एक बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र का दृश्य दिख रहा है।

और कुछ महिलाएं मोमबत्तियां जला रही हैं पीछे की तरफ टेंट लगा हुआ है।